इस इमेज मे मुझे डमी दिख रहा है डमी ने रेड कलर की टी-शर्ट पहन रखी है ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी है।